दिखाए गए दृश्य में एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है।

इमारत के बाहर बहोत सारे दो पहिया वाहन गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं जोकि एक कतार में लगे हुए हैं।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटा सा तालाब दिखाया गया है तालाब का पानी हरा है।

कछुए बहोत ही खूबसूरत है।

इमारत में बहुत सारे खिड़कियां एवं दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

कपो का रंग एवं डिजाइन भिन्न भिन्न है।

पूजा स्थान में बहुत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

दुकान का दरवाजा सीसे का बना हुआ है।

दिखाए गए दृश्य में एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है।

उसके कुछ दूर पर एक बड़ा सा बिजली का खंबा दिख रहा है जिसमें बिजली की तारे भी लगी हुई है।

नदी के आसपास बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

आसमान भी साफ है एवं आसपास का वातावरण बहुत ही साफ एवं स्वच्छ दिखाई दे रहा है।

दिखाए गये दृश्य में कैफे का दृश्य दिखाया गया है।

कैफे के बाहर बहोत सारे लोग खड़े हैं लोग एक कतार में खड़े हैं।

लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं एवं उनकी लंबाई भी भिन्न भिन्न है।

वो अपने दोनों हाथों को पॉकेट में घुसा कर खड़ा है।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटा सा पूजा स्थल दिखाया गया है।

बगल वाली इमारत के शटर गेट पर लाल रंग चढ़ाया गया है जिस पर बांगड़ पावर लिखा गया है।

कमरे में बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई है।

एवं उसके बगल में एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है जिस पर बिरला गोल्ड लिखा गया है।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटे से कमरे का दृश्य दिखाया गया है।

इमारत पर दो मजदूर खड़े हैं एक मजदूर झुका हुआ है जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

पेट्रोल पंप में दो पैट्रोल फिलिंग स्टेशन भी दिखाई दे रहे हैं।

काउंटर पे कुछ मिक्सियां भी दिखाई दे रही है।